मुझे इस तस्वीर में एक बहुत बड़ा स्कूल दिख रहा है और कई सारे बेंच निचे में पड़ा है और एक --

शाम का समय है बहुत ही अच्छा दिख रहा है और उसके आगे में --